सामने कुछ पोस्टर भी लगे हुए है कुछ खंबे दिखाई दे रहे एल्लो कलर के सामने का फर्श दिखाई दे रहा है साइड मे एक घर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

मुझे एक स्टोर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मुझे बहुत सारे अमूल के दूध दिखाई दे रहे है ठंडे की बोतल दिखाई दे रही है फेंटा दिखाई दे रहा है।

एवं जनरल स्टोर लिखा हुआ है नीचे थोक एवं चिल्ड वाटर की दुकान विक्रेता से फर्स्ट चौक गोवा लिखा हुआ है।